जिसके चारों पास लोहा ट्रेनिंग दे के घिरा हुआ है।

उसके अंदर एक आदमी का एक पुतला नज़र आ रहा है उसके पीछे बहुत सारा पेड़ नज़र आ रहा है।

छोटा बड़ा घांस पौधा नजर आ रहा है।